देख सकते है की यहाँ पर ये पेड़-उड़ में पानी-वानी पटा रहा है एक आदमी और यह बहुत ही अजीब आदमी है और यहाँ हरयाली-हरयाली लग रहा है और यह बहुत ही खूबसूरत है।